बहोत सारे गाड़ी दिखाई दे रहे हैं जाते हुए।

एक उधर दरवाजे दिख रहे हैं।

ये झालर दिख रहा है।

बहुत सारे कार्टून दिख रहे हैं।

दीवाल पे लगे पोस्टर दिख रहे हैं।

ब्लैक कलर का टी शर्ट दिखाई दे रहे हैं।

ये दृश्य में एक पार्क दिख रहा है।

टेबल दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे कुर्सी दिख रहे हैं एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है।

टेबल दिख रहा है टेबल के ऊपर बहुत सारे समान दिख रहा है।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

कम बच्चे दिखाए रहे हैं।

और चार्जिंग दिख रहा है तार दिख रहा है पंखे दिख रहें हैं।

नीचे पड़े हुए सामान अलग अलग प्रकार के दिख रहा है।

इस दृश्य में दिख रहा है एक बड़ा सा मंदिर है।

दिख रहे हैं खिड़की दिख रहे है।

होटल दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं।

बैनर दिखाई दे रहा है बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

पर्दे दिखाई दे रहे हैं एक घर दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे पर्दे दिखा दे रहे हैं पर्दे के ऊपर ढोलक दिखा दे रहा है।

मछली जैसा चित्र दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ा सा टॉय देख सकते हैं सीढ़ी देख सकते हैं पेड़ बड़े बड़े देख सकते हैं बादल देख सकते हैं।

आज एक टेबल रखे हुए हैं।

बहोत सारे प्लास्टिक दिख रहे हैं।

दृश्य में एक टेबल दिख रहा--

कांच पे रखे हुए बॉटल दिखाई दे रहे हैं।

प्लास्टिक दिखाई दे रहे हैं।

गेट दिखाई दे रहे हैं।

रैक दिखाई दे रहे हैं।

इधर बैठे व्यक्ति दिख रहे हैं।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

एक बल दिखाई दे रहा है ईंट दिखाई दे रहे हैं।

बड़ा सा एक लकड़ा दिखाई दे रहा है।

बाहर का नजारा दिख रहा है।

एक बड़ा बोर्ड बड़ा सा पोस्टर दिखाई दे रहा है।